समझने इसमें बहुत--

यह लगल हमको यह दिख रहा है कि यह कि स्कूल है यह स्कूल बहुत ही बड़ा स्कूल है और--

भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका को कोरबा द्वारा निर्मित शो शोचालय--

और देखने में लग रहा है की यह एक बड़ा-सा घर है और घर--

लाइट की बड़ी लाइट की जो पोल है वो भी है और साइड साइड में देखिए वो पेड़ भी है। .